घर दिख रहा है इसमें पौधा दिख रहा इसपे बाइक लगा हुआ दिख रहा इसपे बाइक अ अ लगा हुआ इसमें घर में दरवाजा दिख रहा इसमें खिड़की दिख रहा है इसमें --

बिच्छू दिख रहा है भोले बाबा के इसमें चादर दिख रहा है इसमें झंडा दिख रहा--

दो व्यक्ति जो नाव चला रहा है आगे गया है यहां पर मछली मार के रखा हुआ दिख रहा है उसका बोरा सब दिख रहा है बोरिया दिख रहा--